सामने की ओर एक आदमी खड़ा हुआ है बात कर रहा था साइड में एक बच्चे भी दिख रहे हैं।

ऊपर की ओर फैन बहोत सारे फैन दिख रहे हैं।

साइड की ओर स्पीकर दिख भी रहे हैं तथा सामने स्टेज भी दिख रहा है ।

आसमान का कलर नीला दिख रहा हैं तथा सूरज भी निकला हुआ दिख रहा है।

सामने की ओर एक लाल कलर का मैट बिछा हुआ दिख रहा है।

यह दृश्य एक हॉस्पिटल का लग रहा है जहां एक सामने की ओर एक महिला बैठी हुई है।

यह दृश्य एक हॉस्पिटल का लग रहा है जहां सारे लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं।

सामने एक कंप्यूटर भी दिख रहा तथा दो डॉक्टर चश्मा लगाया हुआ दिख रहा है।

साइड की ओर खाली दिख रहा है तथा साइड की ओर कुछ लोग दिख रहे हैं।